चादर बिछाया गया है और ऊपर--

उम् झूमर जैसा कुछ लाइटें जैसा जैसे लगाई गई हैं।

और बहोत सारे स्टोर्स भी है वहाँ --

बड़ी सी बैनर लगाई गई हुई है ब्लू कलर की जहाँ पर--

और वहाँ पर डॉक्टर --

अल्पना बंसल लिखी गई है।

मेरे सामने जो पिक्चर है मुझे एक सैलून का पिक्चर दिखाई दे रही है।

वहाँ पर बड़ी सी पोस्टर लगी हुए है यश राज की--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

वहाँ पर वो आदमी कार के कुछ कलरिंग कर रहा है।

वो आदमी कुछ येल्लो कलर का पकड़ा हुआ है।

लोग सीढ़ियों जैसे कुछ रखे ऊपर चढ़ के छत बना रहे है।

जहाँ पर लिखा हुआ है।

वहाँ पर फिश पॉइंट एंड चिकन शॉप लिखी हुई है।

और प्रॉन भी है लोग खरीदने आ रहै है।

जो कि वाटर में जाके के वाटर पार्क में जाके खेलने हो रहा है।

चटनी ग्रीन कलर के सर्व की गई है।

और प्लेट के सामने दो ग्लासेस भी रखे गए है।

जहाँ पर मेरिट दिखाई दे रहा है।

जहाँ पर धर्म पूरा लिखा हुआ है पिन कोड लिखी हुई है।